यहां पर एक पीले कलर का बहुत बड़ा गेट है और साइड में कुछ घर से बने हुए हैं एक ठेली लगी हुई है उस पे बहुत सारी चीज टंगी हुई है एक--

यहां पर बहोत सारी सब्जी रखी हुई है शिमला मिरच खीरे भिंडी शकलकंदी ।

यह है बहुत सुंदर फोटो है इसमें एक पानी बह रहा है और साइड में कुछ पत्थर भी है।

और यहां पर बहोत सारे पत्थर भी है और साइड में कुछ आदमी भी चमक रहे हैं।

अल्टोस गाड़ी खड़ी हुई है इसको एक लड़का साफ कर रहा है। लड़के ने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और साइड में एक बाल्टी रखी हुई है।

यहां पर तीन घोड़े रेस कर रहे हैं दो घोड़े ब्लैक कलर के एक व्हाइट कलर का है उन पर दो तीन लड़के बैठे हुए हैं।

यह एक एरोप्लेन है। इसकी पूंछ पे लाल रंग हुआ रहा है। यहां यह एक रोड पर चल रहा है। साइड में बहुत सारी घास भी हैं।

यहां पर लोग लुगाई कुछ खाना बना रहे है एक टाइम --

पीले कलर के इन बाक्सों में कुछ अंडरवियर बनियान रखी हुई है एक बॉक्स पर एक लड़के की पोस्टर लगी हुई है।

यहां पर कुछ प्लेट में कुछ चावल रखे हुए हैं चम्मच भी रखी हुई है साइड में कुछ खाली प्लेट रखी हुई हैं टिशू पेपर भी रखा हुआ है एक बोतल ठंडे की रखी हुई है एक बिसलेरी की ठ रखी हुई है कुछ गिलास रखे हुए हैं।

साइड में कुछ पेडी हुई बनी हुई है।